एक आदमी यहाँ पर बेच रहा है और एक अम-- एक आदमी यहाँ पर लेने आया है।

हा बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है और इसमें कई मंजिल का है और नीचे मे कुछ गार्डन वाला पेड़ लगा हुआ है।

यहा एक दुकान है यहां पर एक दो-तीन आदमी खड़े भी है और लगता है फूल लेने आए है और यंहा पर बोहोत ही ज्यादा फूल है।

यहाँ पर यह बहुत ही प्राचीन हो गया है यह पर टूटे पत्थर नज़र आ रहे है ओर आगे बहुत ही बड़ा जंगल जैसा दिख रहा है।

यह एक ऑटो है यह एक रोड है यहाँ पर बहुत ही सारे आदमी नजर आ रहे है और यहाँ तस्वीर एक कार से लिया गया है यहाँ पर कार खड़ा भी है।

यह एक दुकान है यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से दीप जलाए हुए है।

यह एक नक्शा है एक प एक यहाँ पर पोस्टर जैसा बना हुआ है।